और वह उसके साथ में कुछ ब कुछ लोग खड़े हुए हैं जिनमें लेडिस और जेंट्स है।

मुझे किसी ऑफिस के रिसेप्शन की पिक दिख रही है।

ये किसी फीड स्टोर की शॉप लग रही है जिसमें--

ए_एम एण्ड ड्रीम फ्रीड हर्बल प्राइवेट लिमिटेड --

अ जो है वो शुद्ध यूरिया रहता है पशुचारा यहां पर मिलता है हर तरह का और--

और ऊपर पीछे आध पहाड़ियां दिख रही हुई हैं।

में वाइट कलर उनके ऊपर एक वाइट कलर की टैंकी दिख रही है ब्लू कलर की टैंकी दिख रही है।

ये किसी मंदिर का गेट भवन दिख रहा है जहां में म बाहर आउट का गेट बना जिसमें मोर दिख रहे हैं दोनों--

और उसके पास में एक रेड कलर का टब लगा पड़ा हुआ है।

जी किसी बहुत बड़ा स्पीकर की पिक दिख रही है बहुत सारे स्पीकर लगे हुए हैं शर्मा ऑडियो के--

में वो ए_सी लगा हुआ लाइटिंग लगी हुई है सीलिंग लाइट लगी हुई है।

ये किसी फैक्टरी की पिक दिख रही है जिसमें--

और उसके बाद में पिंक कलर का कुछ बोरी से का गड़ा हुआ है।

यह एयरपोर्ट की पिक दिख रही है इस पे लिखा हुआ ब्लैक ब्लू कलर का बोर्ड लगा हुआ लिखा है।

गेट पे और इस पे वहां पर पब्लिक आई हुई है दिख रही है जिसमें लेडीज--

और यहां पर एक दरवाजा लगा हुआ है जिसपे कुंडा लगा हुआ है इसका--

टायर साइकिल के टायर के पंचर की दुकान दिख रही है जिसमें--

हैंडीकैप बॉय व लड़का वो आ रहा है।

ग्राइंड लिखा हुआ है फिटिंग ग्राइंडिंग एंड वेट ट्रेनिंग --

जिसमें बॉय आदमी और औरते हैं और ठीक उसके आगे मिट्टी का डेर लगा हुआ है और उसके पास में एक लड़का बैठा हुआ है।

कवर की पिक दिख रही है टैंक की कवर की पिक दिख रही है इसके आगे गार्डन पड़े हुए हैं।

और उस पे साइड में बॉल एक पिंक कलर का बॉल है एक ग्रीन कलर का बॉल दिख रहा है इधर --

आदमी बैठा हुआ है और अ ऊपर इसकी सीलिंग बहुत अच्छी है इसका फर्श बहुत साफ सुथरा दिखाई दे रहा है।

उस पे बाहर दो गाड़ियां दिख रही है इसमें एक रेड कलर की गाड़ी है एक सिल्वर कलर की गाड़ी है।

इस पिक में किसी--

बार की पिके दिख रही है जिसमे पिज्जा का हम--

पोस्टर लगा हुआ है और उस साइड में पोस्टर में कुछ लोग--

ये किसी बैग की दुकान शॉपकीपर दिख रही है जीसमें ऑल टाइप के बैग दिखाई दे रहे हैं जिसमें टूरिस्ट बैग और--

पिठ बैग वगैरह है और लेडीज बैग जो है वह दिख रहा है।

इसमें यह शटर दिख रहा है और अंदर रोशनी आ रही है बाहर से और यहां पे रो दो रोड पाइप खड़ी दिख रही है

मार्जिन टेलिकॉम और इसमें एम_आय के रेयलमि सैमसंग और--

ओपो के वगैरह मोबाइल वगैरह दिखाई दे रहे हैं मिल रहे हैं।

वाइट कलर का पत्थर टाइल्स लगी हुई है और--

बहुत ऊपर लाइट लगी हुई है ब्लैक कलर का टेबल दिखाई दे रहा है और साथ में बालकनी दिख रही है इसमें वाइट कलर का शीशे का--

और रेड कलर की बोट है और इसमें अह आसमान बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का।

बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसके पास जो कार्य दिखाई दे रही है और इसमें एक बार जो साइड पे जो है वो ग्रीन पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

और इसमें नीचे जो ग्रीन कलर के मैट मिसे हुए दिखाई दे रहे हैं.

और बाहर चढ़ के बाहर रिक्शा खड़ा हुए है रिक्शे खड़े हुए हैं.

कुछ अ मशीन मशीनरी कोई वर्क चल रहा है इसमे--

गार्डनस है जिसमें झूले वगैरह लगे हुए हैं हम--

और इसमें इसके साथ में डस्टबीन बड़ा हुआ है.

यह एक डेंटिस्ट की शॉप लग रही है जिसमें डेंटिस्ट की मशीनें लगी हैं दो कुर्सी लगी हुई है एक सीढ़ियां जा रही हैं एक--

और इसमें दो ट्यूबल लाइट लगी हुई है एक सीलिंग फैन लगा हुआ है.

इमीग्रेशन वीजा कंसलेंट टू ट्रेवल साथ में जहां पे कुर्सी पड़ी हुई है--

और यहां अलर्ट्स का भी बोर्ड लगा हुआ है.